दिल है। रेड कलर की और बहोत सारे कलर से सजाई गई है और पेड़ पौधे भी लगाए गए है। पेड़ पौधे हरे भरे नजर आ रहे--

एक पुल की तरह भी दिखाई दे रहा एक की तरह भी दिखाई--

और रेलवे की पटरी पे एक व्यक्ति जो जा रहे हैं जो फोन से बातें करते हुए।

पेड़ हरे और भरे हुए नजर आ रहे हैं और खाली स्थान नजर आ रहा है।

काफी देखने में खूबसूरत लग रहा है।

यहां पर चार खंभे दिखाई दे रहे हैं और कुर्सियां भी बनाई हुई है।

और पेड़ पौधे हरे भरे अच्छे दिख रहे हैं।